एगो जिम करने वाला जिसमें आदमी दौड़ता है और व्हाईट कलर का दीवार हैं। शीशा है। बहुत सारा जिम करने वाला नीचे में लाल कलर का कारपेट हैं। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है। वहीं से चल रहा हैं।

और एगो जिम करने वाला है। अगल बगल में कलर का पीला पीला कलर का जिम करने वाला है।

एगो ग्रीन कलर का बिल्डिंग है फिर जाके आसमान है फिर जाके निचे में रोड है बाइक है दो ठो दुकान है दुकान में बहुत सारा समान है एगो कुत्ता है दोगो आदमी जा रहा है।

ऊ मन्दिर है ऊपर में पेड़ है सीढ़ी चढने का हैलाल कलर का मन्दिर है अगल-बगल पेड़ है ऊपर में बादल हैं और एगो मन्दिर का सीढ़ी है ।

बीच में गेहूं का गाछ है और बीच में प--बीच में पानी है और अगल-बगल पूरा गेहूं का गाछ है और उपर में आसमान है आसमान सादा कलर का है पानी नीला कलर का है।